यह एक मकान सही है मकान के ऊपर टेन लगा रही है लाल लाल रंग से रंग कर रखें है एक साइड में धोलो कर रखो है।

एनके टायरा पे रिम है रिम को रंग धोलो हेर एव आगे भी बैठने की जगह है गेला में भी बैठने की जगह है एम पकड़न की भी जगह है ऊपर एक छात है।

यो एक जिला उप उपक्षय के निवास निवारण केंद्र चूरू है र अंग नीचे एक होल्डर लाग रियो है होल्डर के नीचे खिड़की है।